यहां पर आकाश ट्रांसफॉमर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बेंच और चेयर लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे अलग अलग गेम्स दिख रहे हैं।

यहां पर एक हरा रंग का मैट बिछा हुआ दिख रहा है।

यहां पर बहोत सारा कपड़ा दिखाई दे रहा है।

यह दिन का मौसम दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक सुंदर प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है।